यहाँ पर कुछ फंक्शन या कार्यक्रम हो रहा है। इसी के बीच में एक पानी के फुहारे लगाये गये हैं जो पानी बहुत ही ऊपर जा रही है और इस जगह पर बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं।

और इसके सबसे नीचे वाले भाग को बहुत अच्छे से लाईटो से सजाया गया है।

यह एक खुली मैदान है और इस खुल्कती मैदानों के बीच एक छोटी सी पहाड़ी भी है।

यह एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में एक बच्ची को कुछ डॉक्टरों के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है और इस जगह पे लिखा हुआ रक्तदाता दिवस चौदह जून और यहाँ के दो-तीन डॉक्टर इसपे खड़े हैं और यहाँ टेबलें कुर्सी लगाई गई है।